यहाँ पे लोग कुछ लोग पैसे के लिए भी आए है कुछ पैसे जमा करने आए है कुछ लोन के लिए आए है यहाँ पे दो चार लोग लाइन में लगे है कुछ औरते है जो एक दूसरे का चेहरा निहार रही है।

यहाँ से वहाँ जाते है यहाँ पे बहुत सारे ट्रैन आते है एक्सप्रेस ट्रैन लोकल ट्रैन कुछ लोग एक्सप्रेस में चढ़ते है तो कुछ लोग लोकल में चढ़ते है यहाँ पे देखने का मतलब खली दिख रहे है ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है दुखने भी खुले है एक औरत है वो बैठी हुई है।

यहाँ पर लोग तो बीड़ा इकट्ठा नहीं किये है ऐसा लगता है अभी यहाँ मैच स्टार्ट नहीं हुआ है।